एक वाइट कलर की कार भी है यहां पर और साइड में अ उसका ब्रांच सेम ब्रांच है हिंद आई हॉस्पिटल का--

इसके ऊपर बहोत सारे कांच के विंडोज लगाए हुए हैं और क्रीम कलर का इसका पेंट है।

कोट डाला हुआ है और ग्लूकोज का बॉक्स भी लगाया हुआ है।

उसकी मां ने ऑरेंज कलर की साड़ी ग्रीन कलर की बॉर्डर है उसकी।

झूमर है यहां पर और लैंप्स हैं और लैंप्स के अंदर से भी फ्लावर्स आ रहे हैं कुछ लेडिस चेयर्स पर बैठे हुए हैं।

फसल का लगाया हुआ है थैले हैं जिसमें अनाज भरा जा रहा है कुछ आदमी यह ठहर कर देख रहे हैं।

बड़े बड़े मछली हैं छोटे छोटे हैं पापलेट मच्छी है और एक औरत है जो मछलियों को कट कर रही है।

बोर्ड भी लगाया हुआ हैजिस पर कौशल गायने मेडिकल सेंटर लिखा हुआ है।

एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ऊपर फ्लोर पे बोर्ड लगा हुआ है लायंस मेडिकल कंपलेक्स ।

बहोत सारे टेबल्स हैं यहां पर फैंस हैं और सेल्समेन भी है यहां पर--

और सामने छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं जिसपर येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं।

और बोहोत सारे गॉडेस के भी मूर्तियां हैं यहां पर साइ बाबा की भी मूर्ति हैं।

हारपेक है और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं हिट है।

और अंदर दो बिल्डिंग्स हैं जिसमें टैंट मारे हुए हैं दो जिसमें डेकोरेशन रेड और गोल्डन कलर का हैं।

और छोटी छोटी घांस है अन छांव टाइप है यहां पर और उसके दूर में भी कुछ बकरे है।

यहां पर एक शॉप में कुछ सोफा सेट रखे हुए हैं लकड़ी के सोफा सेट है जिसका गाधि का कलर है पत्ते पत्ते का इस पर डिजाइन है ब्लू एंड --

और कुछ गो मंदिर के मूर्तियों के पिक्चर लगाए हुए हैं।

एक धाबा हैजिसका नाम हैहवाई अड्डा यहां पर छोटी-छोटी घास है जो मुरछा गई है एक बहुत बड़ा पेड़ है।

एक पहाड़ी इलाका है जिस पर छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं वहां से गुजरकर ऊपर जाने का रास्ता जा रहा है।

ब्लैक कलर की वायरिंगस है यहां पर और यहां पर ग्रे कलर की शर्ट को एक आदमी इस्त्री कर रहा है।

एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं पिक्चर्स लेकर।

और वो डार्क ब्लू कलर का टी शर्ट एंड ब्लैक कलर का पैंट पहना है वो भी बच्चों की फोटो ले रहा है और बहुत सारे बच्चे यहां पर पेंटिंग कर रहे हैं।

डंबलस है बहोत सारे और बॉटल्स रखे हुए यहां पर एक बड़ा सा मिरर है जिसमें--

पीछे से लाइट आ रही है ब्लू कलर की इस जिम में पूरी लाइटिंग गोल्डन कलर में है।